वहां पे छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाई गई है।

उसी के पास एक बहुत बड़ा सा बाक्स रखा हुआ है।

इसके छत के ऊपर ए_सी के कंप्रेसर मशीन रखी हुई है।

जिस सड़क की दूसरी तरफ एक घर दिख रहा है।

जहां पर बहोत सारी ऊंची ऊंची चट्टान दिख रही है।